यहाँ पर मुझे दो बल पीली कलर की दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर मुझे भगवा कलर की देवाल दिख रही है।

यहाँ मुझे व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है यहाँ मुझे एक सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कुछ समान धरा हुआ दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं यहां मुझे कुछ मशीनें धरी हुई दिखाई दे रही--

यहां मुझे एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है यहां मुझे कुछ लोग खड़े हुए ए_टी_एम में दिख रहे हैं।

यहां मुझे एक भी रिक्शा दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे नीले कलर की पन्नी बिछी हुई दिखाई दे रही है।